इस मंडप पे फुले भी लगाई गई है इन फूलो का रंग सफ़ेद और लाल है और यहाँ पे फोटोग्राफर भी है जो कि फोटो --

जैसे की मैं यहाँ पे देख रही हु एक नदी है जोकि सुक गयी है यहाँ पे पत्थरो के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी ठहरा हुआ है।

और इन इमारतों का रंग घीआई है जो बीच की ईमारत है उसका रंग सफ़ेद है।

और दीवारों का रंग गिहाहि है और बॉर्डर लाल रंग का है।

एक फ्रिज रखा हुआ है जो की कोल्ड्रिंग का है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़े नज़र आ--

जैसे की में यहाँ पे देख रही हु यहाँ पे कुछ पेड़ है और पत्थर भी है और इनके ऊपर खड़े हुए कुछ लोग भी है।

जैसे की मै यहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे एक घर है इस घरो की दीवारों का रंग भी तोतिया रंग है ।

जैसा की मे यहाँ देख रही हूँ एक घर का आंगन है और इस आँगन मे बॉउंड्री बंधी हुई है।

इस नदी के बगल मे एक बहोत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ के पास मे तीन लड़के खड़े हुए है।

और इनमे कुछ लड़के है और कुछ लड़किया है और योगा करना सेहत के लिए बहोत अच्छी चीज है ।

जैसे की मे यहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे एक सड़क नज़र आ रही हैं।

और इन्होंने होली खेल रखी है और इन्होंने ने गुलाबी रंग से होली खेला हुआ है होली एक हिन्दू लोगों का त्योहार हैं।